यहाँ पे बहोत से लोग के हैं। यहाँ पे मन्दिर में दर्शन करने के लिए आये हुए हैं और यहाँ पर बहोत से लोग इकट्ठा हैं।

जो कि यहाँं पर जमीन के अन्दर कुछ यहाँं पे कस्सी या फिर कुछ फावड़ा लेके या पे कुछ खोद रहे हैं जैसा कि यहाँं पे कुछ या पे कुछ हो।

अ-ऊपर यहाँ पे पट्टियों का यहाँं पे ऊपर छत छट है और यहाँं पर कुछ डिज़ाइनिंग भी है इस घर के अन्दर जैसे कि यहाँं पे कोई पहले जमाने की कोई किला हो।

हैलो गाइज जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हैंकि यहाँ पर एक बस खड़ी है और एक रिक्शा यहाँ पे दो रिक्शे खड़े हैं उन रिक्शे के अंदर एक-एक आदमी बैठा है |

उस टेंट के अंदर याने की जैसे की ये शादीया फिर कोई फंक्शन के अंदर ये टेंट लगाए जाते हैं याने की स्टॅंड की डेकोरेशन है ये बहुत अच्छी की गयी है यहाँ पर बहुत शे लोग हैं यहाँ पर खाना खाने आये हैं।

जैसे की यहाँ पे बहुत से लोग हैं यहाँ पर कुछ दिक्कत है यानि की यहाँ के हेल्थ के परे में यहाँ पे आये हुए हैं।

यहाँ पर अब इसको जलाएंगे जैसे कि अपने यहाँ पर ऐसे बोल सकते है की एक जैसे कि एक त्यौहार आता है के दशहरा दशहरा के उपलक्ष में यह रावण को जलाती है यहाँ पे इस रावण को जलाएंगे अब।

यह हवेली लगती है और यहां पे कुछ छोटे-छोटे यहां पे कुछ दरवाजे भी हैं कुछ खिड़कियां भी हैं और बाहर बहुत से पेड़ पौधे भी है।